यहाँ पे खेत हैं बहोत अच्छा खेत हैं यहाँ पे बहुत लंबी सड़क हैं और यहाँ पे बहोत लोग यहाँ आए हुए हैं अंदर जाने के लिए--

घर- घर को बनाया गया है नीचे टाइल्स -वैल्स है बहुत ही सुन्दर है बहुत ही खूबसूरत है ये नजारें --